नहाने की लिए ये जगह अच्छा है यहाँ आइए नहाइये और जाइए घर कपडा अपना बाल्टी में धो सकते है कपड़ा सभी धो सकते है और भी धो सकते है और कुछ नहीं।

यह कॉलेज हैं। मधेपुरा इन्स इंजीनियरिंग या क्या लिखा हुआ हैं ठीक से नही दिख रहा हैं। लेकिन हैं कॉलेज यहां पर बच्चो को विद्यार्थीओ को पढ़ाया जाता हैं जो की मधेपुरा मे लग रहा हैं हमको।

और यहाँ पे झंडा तुलन भी होता हैं ऊपर टावर है छत्ता लगा हुआ हैं एंटेना--

यहाँ शायद सामने मे एक सादर अस्पताल भी हैं यहाँ पर आप दिखा आपने बहुत तबीयत ख़राब हो जाए तो आके इलाज भी करा सकते हैं।

यहाँ से कोई भी सामन नही ले जा सकता हैं इधर उधर सामने मे ग्रिल हैं अंदर मे कुछ आदमी बैठे हुए हैं इलाज कराने के लिए ऊपर पंखा चालु हैं।

आप यहाँ पे खड़े होके फोटो खिचा सकते हैं ऊपर बिल्डिंग दो तल्ला हैं तो आप भाड़ा भी ले सकते हैं उपर कोई यूनियन पैथो लैब हैं यहाँ लैब हैं इसका जगह दिया हुआ हैं एड्रेस है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब--

जिम है। एक दू तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह आदमी जिम कर रहा है।

ऊपर इसका एड्रेस दिया हुआ हैं श्री हींग हिंग लाज बुक डिपो स्पोर्ट्स स्टेशनरी कॉपी कोपो फोर्टी बुक यहाँ पे सब कुछ किया जाता हैं कोपो फोटोकॉपी भी किया जाता हैं और आइये अपना बच्चो को लिए ले के--

ये अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है बोहोत ही सुन्दर डेकोरेशन लग रहा है क्रिसमस का डेकोरेशन लग रहा है यह भाई सब बैठ के फोटो खींच रहे है उनके बगल में उनकी बीवी है।

इधर कुछ पोस्टर लगा हुआ है कपड़ा का प्रचार हो सामने गार्डन है छोटा-सा वहां फोटो घीचा सकते है घूम सकते है आके बोहोत मजे कर सकते है।